व्हाइट कलर की ईटें लगी हुई हैं और पौधे लगे--

ये ऑरेंज सफेद ब्लू और ग्रीन कलर का है।

हवाई अड्डा लिखा हुआ है और छोटे छोटे--

उन पेड़ों में रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है।

यह एक गाजरी कलर दूसरा हल्का हरा कलर हुआ है।

सामने की ओर एक स्प्रे की बोतल एक कंघा और अस्तुरा रखा हुआ है।

इस बिल्डिंग में दो तरह का कलर हुआ है।

नीले और हरे हैं और गेट लगा हुआ है।

इन्होंने ने ब्लू कलर का पैंट कोट पहना हुआ है आंटी ने साड़ी पहनी हुई है।

एक अंकल बगल में खड़े हैं थोड़ी आगे पर उन्होंने व्हाइट और पीला कलर का झोला--

सब पेड़ लगा हुआ है उस पर एक घंटी लगी हुई है।

जो की उसके ऊपर एक लड़का बना हुआ है।

खंभे लगे हुए हैं बलफ लगा हुआ है।

उसके बगल में भी रेड कलर और मअअ मटिया कलर से बना हुआ है।

दो स्कूटी हैं और एक डस्टबिन भी है और साथ में रेलिंग लोहे की उठी हुई है उसपे भी पेर है।

और उसकी फर्श जो है वो पत्थर टेल्स की बनी हुई है और--

उसपे दो ट्रायंगल बने हैं एक पीला और एक सफेद है।

उसमें ग्रीन ऑरेंज पिंक रेड ग्रीन डार्क कलर व्हाइट पिंक से कुछ डिजाइन है।

और छत के ऊपर चार लाइटें लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में सामने की और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

पड़ी है जिसपे जुताई हुई है और रोड है।

एक लैपटॉप रखा हुआ है। एक बोतल जो कि पिंक कलर की है और एक--

और नीला और वाइट कलर का अ--

डमी में शेरवानी टंगी हुई है।

एक हरे रंग के हैं और मट्टी के पौधों मिट्टी के गमलो में पौधे लगे हुए हैं।

और मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगा हुआ है औ--

देखिए स्पीकर चार है दो स्पीकर पे स्टीकर बने हुए है।

इस तस्वीर में बहुत अच्छा नजारा है।

सामने की ओर आजू बाजू पेड़ लगे हुए हैं औ--

मिट्टियो में छोटे छोटे पौधे जमे हुए हैं और दूर देखो तो वहां पे छोटे छोटे घर और बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उन्हें --

सामने की ओर एक मछुआरा खड़ा हुआ है।